इसके बगल में रेड कलर का जाल वाला टोकरी दिख रहा है।

तीन खंभे दिख रहे हैं और इसका बिल्डिंग कलर व्हाइट और ग्रीन है।

सारे समान दिख रहे हैं इसमें और पेप्सी का फ्रीज दिख रहा है और सामने में दो लेज का पैकेट भी दिख रहे हैं जिसका कलर रेड है।

सामने में एक मंदिर सा कुछ दिख रहा है और येलो से सेट लगा हुआ --

घर में सिलेंडर रखी हुई है जिसका कलर ब्लैक --

बिल्डिंग के साइड में एक लाइट लगी--

जस्ट बगल में बच्चे के आधार में दो को सूची में दिखाए गए है।

कलर ब्राउन कलर का--

इसमें जिसमें सामने में एक बेड लगा हुआ है बेड के ऊपर नीला कलर का बेड लगा हुआ है।

इस पिक में कार सर्विस का पिक है जिसमें सामने मे सर्विस लिखा हुआ--

फेयरडील हुंडई नाम का एक शोरूम है।

इसके इसके सामने एक इंसान खड़ा है जो की वाइट कलर का टी शर्ट और ब्लैक कलर का ट्राउजर पहन रखा है और उसके नीचे एक ब्लू कलर का डस्टबिन भी है।

जिसमें एक हॉस्पिटल दिख रहा है जिसमें उसका नाम ग्लोबल हॉस्पिटल है।

बहुत सारे ए_सी भी उसमें लगा हुआ है और हॉस्पिटल के फ्रंट में ग्लासेज लगा--

रोड के जस्ट बगल में एक अंब्रेला लगा उसके नीचे कुछ लोग अ स्नेक्स खा रहे--

सामने में मंडप है जो की कलरफुल --

रोड साइड और पार्किंग एरिया के बीच में स्पीड ब्रेकर का बाउंड्री भी है।

दोनों साइड रेड कलर के बोर्ड लगा हुआ है जिस पर प्रभु का प्रार्थना और इंग्लिश में लोड प्लेयर लिखा है।

इसमें बहुत सारी मिठाइयां हैं लड्डू भी है और पेड़े भी दिख रहे हैं।

पौधे को पानी देने के लिए पाइप के सहारे से फुहारा दिया जा रहा है।

सारे पेड़ पौधे इसमें ग्रीन कलर के दिख रहे हैं एक बीच में एक झोपड़ी है जो कि ब्राउन कलर का दिख रहा।

यह ब्राउन कलर का दिख रहा उसके सामने कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है और उसके लाइन का पोल भी दिख रहा और ये एक रोड के किनारे है।

बहुत से अच्छे से डेकोरेट किया गया और लाइटिंग भी लगी हुई है।

लेफ्ट साइड से बड़ा से छोटे की ओर साइकिल है।

सारे साइकिल टायर ब्लैक है और चार साइकिल जो पीछे से है उसका आगे बकेट लगा जीसका कलर येलो बाकी साइकिल में कोई बकेट नहीं है।

यह एक फीमेल बियर शॉप दिख रहा है जिसमें बहुत सारे लेडिस के कपड़े दिख रही है।

यह एक रोड साइड बेकरी फोटो दिख रहा है जिसका नाम विजय भंडार।

नीचे शॉप में एक इंसान जाता हुआ दिख रहा है जो पिंक कलर का शर्ट पहन रखा है उसके नीचे एक बच्चा है जो तीन कलर का कंबीनेशन कपड़ा पहन रखा--